और यहां पे एक बड़ा सा पेड़ है और यहां एक सड़क है दोनों साइड जा रही है यहां पे --

यहां पे एक बंदा अपने गोद में ले के अपना बच्चा घूम रहा और एक ले एक अपना चल रहा है हेलमेट ले के वहां पे एक स्कूटी के पास एक बंदा खड़ा है यहां पे एक कार खड़ी बड़ी सी।

यह परचून की दुकान है यहां सामने एक रस्सी पर बहुत सी पुड़िया टांग रही है खाने की--

और एक साइड में यहां पे भी पेड़ छोटे छोटे पौधे लगे हुए और जिसमें एक बिजली की लाइट लगी हुई है ली लड़ी लगी हुई है वहां पे भी एक छोटा सा साइड में--

ये जय मां दुर्गा का मंदिर है। यहां पे दोनों दीवार पे सत्य लिखा हुआ जय मां दुर्गा लिखा हुआ यहां पे कर्टन है।

ये केमिस्ट की दुकान है यहां पे सेल्फ मे बहुत सी दु बहुत सी दवाइयां रखी हुई है। कफ सिरप रखे हुए है।

यह रोड रोड पे पेट्रोल पंप है। यहां पर रोड की साइड में एक वह सब पुराना पेड़ है और यहां पर एक--

लाइट खंभा लागा हुआ लाइट का यहां पे एक स्कूटी वाला स स्कूटी लेके जा रहा है वहां पे दो बंदे खड़े--